यह एक पोखर है और पोखर में पानी भरा हुआ है चारो तरफ से सीढ़ी दिया हुआ है और सीढ़ी पे कुछ आदमी पैर हाथ धो रहे है।

बहुत टूटी-फूटी भी कार है और न्यू कार भी है। निचे बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है और अलवेस्टर से ये टांगा हुआ है। उसके निचे बहुत सारी गाड़ी खड़ी है।

ये मछली की दुकानें हैं और बहोत सारे मछलीयाँ हैं और बहोत सारे आदमी मछली बेच रहे हैं बहोत बड़ी-बड़ी मछली भी है और कोई आदमी खरीदने भी आए हैं और इस मछली को --